इस दृश्य के अंदर सनसेट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

दीवाल के ऊपर कुछ फ्लावर पॉट भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर इन सारी दीवारों का वाइट कलर है।

यहां पर बोहोत सारे सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर न्यू टेक्नोलॉजीस की वॉशिंग मशीन और बराबर में रिफ्रीजेटर रखा हुआ है।

यहां पे कई सारे दो पहिया वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक केक पिंक कलर का है तो दूसरा यलो कलर का दिख रहा है।

ये एक पार्क के बाहर का क्लिक करा हुआ दृश्य है सामने की ओर काफी सारे बड़े बड़े पानी के फव्वारे लगे हुए हैं।

यह एक एनिमल जू का दृश्य है इसके अंदर एक बहुत बड़ी चेयर पड़ी हुई है जिसके ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक टुकटुक भी चल रही है जिसका ब्लू कलर है।

मंदिर के ऊपर काफी सारे रेड कलर के झंडे भी लगे हुए हैं।

और यहां पर चार घोड़ो वाले रथ की प्रतिमा भी बनी हुई है।

ये एक गार्डन का दृश्य है यहां पर बहुत सारे व्हाइट और पिंक कलर के पुष्प लगे हुए हैं।

और नीचे प्राचीन बावली यहां पर एक व्यक्ति भी चलता हुआ दिख रहा है।

ये एक शॉप के बाहर का क्लिक करा हुआ दृश्य है यहां पर बहुत सारे दो पहिया वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक शॉप के बाहर का क्लिक करा हुआ दृश्य है।

इस इमेज के अंदर एक व्यक्ति कार को रिपेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर दुकान के अंदर काफी सारे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर लिखा हुआ है जय मां वैष्णो आयरन एवं कंस्ट्रक्शन ।

और साइड में एक नहर भी जाती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर कई सारी भागने वाली मशीन रखी हुई है और इन मशीन का ब्लैक कलर है।

इस व्यक्ति ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।